यह एक शोरूम है यह शोरूम में कपड़े और बुलेट्स बेचे जाते हैं यहाँ पर महँगे और रॉयल इंफीनिट्स के बुलेट बेचे जाते हैं यहाँ पर दो लाख से लेकर पांच लाख के बुलेट्स भी बेचे जाते हैं।

एक स्टेडियम है। यह स्टेडियम में वोलीबोल खेला जाता है। यहाँ पर दोनों साइड दो नेट लगाए गए हैं। यह नेट में खिलाडी लोग इसमें वॉलीबॉल को डालते हैं और एन्जॉय करते हैं खेलते हैं।

एक ऑटो है यह इलेक्ट्रिक ऑटो है यह ऑटो ना तो गैस --